वॉशरूम में काम आने और अपने जो पानी वाले कनेक्शन है। उसमें काम आने वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं।

और ये एक वो खेल सा खेला है जिसमें घोड़े के ऊपर बैठ के नीचे बॉल्स है और एक स्टिक सिलारीन है उस बॉल को मारे है।

भगवान की गोड़ा की ओर की सीनरी है तरह तरह की सीनरी दिखाई दे रही है एक गड़ा लागरहा ऊपर जिसमें टाइम चल--

और इस फोटो में हम देख सकते एक पोस्ट ऑफिस है शायद--

लोहे के ये तार वगैरह लगा रखें है काफी पुरानी सी बिल्डिंग दिखाइ दे रही पीछे पेड़ है।

तो इस फोटो में हम देख सकें हैं यह कोई क्लॉथ शॉप्स है जिसमें आप देख सको हो एक ते एक बढ़िया पैंट शर्ट --

काफी तरह का सामान दिखाई दे रहा है जिसमें कपड़े वगैरा पहनने के लिए और रैक वगैरा बनाये हुए है।

सेविंग क्रीम मेडल यूज क्रीम है सेंट परफ्यूम हर तरह का सामान रखा हुआ है और आप देख सको शायद नीचे की साइड कपड़े वगैरा भी रखे हुए है।

वहां का फोटो है और इसमें एक बहोत बड़ा पोल लगा रखा है और इसकी पोल के साइड में से बिल्कुल सफाई की हुई है।

अलग अलग फोटो पे बैठे हुए हैं और सभी राफ्टिंग कर रहे हैं।

काफी लोग है जो आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं शॉप दिखाई दे रही हैं काफी--

ओ इस फोटो में हम देख सकते हैं एको भी पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हो ऊंचे ऊंचे से--

और आप देख सकते चारों तरफ मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है बीच में एक खड्डा सा दिखाई दे रहा है और शायद यहां पर खुदाई वगैरह का काम चालू है।

तो इस फोटो में हम देख सके हैं एक आदमी है जो खड़ा है।

जा रही हैं कुछ आदमी हैं जो बैंक में जा रही हैं।

और बाहर ये काफी गंदगी वगैरा फैला रखी ने चिट वगैरा हैं जो डस्टबिन राखी हैं सारी।

आप देख सको एक लड़का है जिसने टाइ वगैरह व्हाइट शर्ट पहन रखी हैं।

हैं काफी आदमी हैं जो शिप में ऊपर चढ़े हुए हैं और इस पे झंडे वगैरह लगाए हुए हैं।

और घने खंभे लाग रहे हैं जिन पर बिजली के तार लाग रहे हैं भीतर कुछ घर से भी बने और --

आप देख शकों का कदी कच्चा कच्चा सा दिखाई दे रहा है। एक आदमी खड़ा है।

सोफा दिखाई दे जिसपे सिल्वर कलर हो रहा है और पाछे ना जो टेंट है।

शीशे वगैरह लाग रही हैं भीतर बड़े सामान धरा है बाहर खड़ी बाइक वगैरह खड़ी हैं और उसमें--

तो इस फोटो में देख सको हो यो कोई साईं राम फास्टफूड --